ऑटो खड़ी है दो गो ऑटो हैं यहाँ पे जो की बहुत अच्छा लग रहा है और इसमे पंखा भी लगाया गया है दो पंखा तीन पंखा है।

जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है जगह ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का सीन ।

ऐसा लग रहा है की सरकारी स्कूल है जो सरकारी स्कूल में अपना पढ़ते हैं लोग जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में सुंदर लग रहा है।

सामने लिखा है जो कि बहोत अच्छा है और यहाँ पर बहोत --

होटल खस्ती लग रहा है जो की बहुत सुंदर लग रहा है होटल खस्ती और इसमे कोई नही है अगल बगल खाली इस तरह सजा के सब कुछ अछे से करके रखा गया ह यहाँ पे जो की बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे सुंदर लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा --

दो तकिया लगाया गया है लंबा-लंबा एगो बीच मे लगाया गया है एकदम पतला सा --